किसी का बर्थडे मनते हुए नजर आ रहा हैं यहां पर काफी सुन्दर डेकोरेट किया गया हैं और काफी सारा बैलूनस भी लगाया गया हैं।

और यहां पर बैलून से सजाया गया है कुछ केले के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें--

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जो की देखने में काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

और पर्दे से इसे बनाया गया है और इसके बगल में काफी सारे घरे है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक मछली का दृश्य है जिसमें काफी सारा मछली दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ मछलियों के पीस बनाए गए हैं और कुछ मछलिया जिंदा है और यहां--

और यह लड़की एक चटाई पे योगा करते हुए नजर आ रही है यहां पे कुछ दरवाजे भी दिखाई--

नजर आ रहा है और एक मट्टी का आर भी बना हुआ दिखाई दे रहा--

यह एक बनते हुए घर का दृश्य है जो कि अभी बना --

काफी सारा लोहा लगाया गया है और छड़ लगाया गया है।

यहां पे काफी सारे व्यक्तियों का भीड भी है इसके बगल में एक मिट्टी खपड़े का घर भी दिखाई दे रहा है और--

यह एक प्लास्टिक दुकान का दृश्य है जिसमें प्लास्टिक के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक ब्लू कलर का डब्बा रखा हुआ है जोकि टेबल पे रखा हुआ नजर आ रहा है।

और इस दृश्य में पीछे की ओर ब्लैक कलर का तार भी लग गया है लगाया गया है।

और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी लगाया गया है।

या गया है और कुछ लाइट्से भी लगी हुई हैं इस रूम के बाहर काफी सारा बैलून से सजाया गया है जिस बैलून का कलर --

शीशो शीशे लगे हुए हैं और बाहर में एक ट्रेसफार्मा बनाया गया है।

और कुछ कपड़े यहां पे मोडे हुए हैं और कुछ कपड़े हैंगर में टंगे हैं।

छठ टोकरी लिया हुआ जिसमें काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है और--

यह एक शिलाई मशीन दुकान का दृश्य है जिसमें काफी सारे मशीन यहां पे रखी हुई।

लोहे का सामान भी रखा हुआ है।

व्हाइट कलर के प्लेट में रखा हुआ नजर आ रहा है इसमें दो चम्मच लगाया गया है और--